और पानी में बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और पुल के ऊपर बहुत सारी गाड़ी रखी हुई है जो की गाड़ी के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं।

सामने इक आदमी है जो की काले कलर की शर्ट पहना हुआ है निचे पैंट पहना हुआ है वह इक मशीन को चला रहा है।

ये एक रेलवे स्टेशन का हॉल है इसमे ऊपर लाइट ए लगी हुई है और बगल मे दुकान है जिसमे बहुत सारे समान रखे हुए है।

एक जो की डामर वाली है सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए है एक बाइक रखी हुई है जो की लाल कलर की है।

छोटी छोटी लड़किया भी जा रह है सामने एक बहुत बड़ा गेट है जो की बंद है।

सामने एक घर है जिस मे दरवाजा लगा हुआ है दरवाजे में कांच लगी हुई है कांच के ऊपर बहुत सारे खानेवाले समानों की फोटो लगी हुए है।

जो की मुंह मे मास्क लगाए हुए है और सर मे दो लोग सामने टोपी पहने हुए है पीछे एक आदमी है जो की टोपी नहीं पहना बगल मे साइकिल रखी हुई है एक आदमी है जो की बोरी रख के अंदर की और जा रहा है।

सामने एक दो मंजिला मकान है नीचे बहुत सारी दुकाने खुली है और सामने एक पिलर लगा हुआ है जिसमे सफेद कलर का और लाल कलर का पैंट हुआ है उसके बगल मे डस्टबिन है।

कांच का बना हुआ गेट लगा हुआ है अंदर एक आदमी है जो की सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है।